हैलो आप देख रहे है ये इंडियन एयरलाइंस ये हमलोग का हमलोगों को परिवहन का सबसे अच्छा साधन है।

भिंडी हो गए खीरा हो गए उ मिर्च शिमला मिर्च हो गए बड़े-बड़े बैंगन हो गए ये सारे हरी सब्जियां हैं जो हम लोग को स्वस्थ और एकदम तंदरुस्त बना के रखता है।